चढ़ाओ बनी हुई है बहुत बड़ी बहुत सारी खिड़की लगी हुई यह एक पीले कलर का पुता हुआ है ।

बहुत सारी लेडीज सियो ने वाइट कलर की साड़ी पहन रखी है।